ये एक कपड़ों की दुकान है यहां पे शेल्फ में--

लेफ्ट प्वाइंट से यहां पे बहोत सारा कपड़ों का अलग अलग शेल्फ में--

और यहां पे अलग अलग शेल्फ में अलग अलग--

के फोकसस भी है बाजू में बड़े बड़े छाना भी यहाँ पे दिख रहे हैं।

और यहाँ पे चार्जी मारी गई है खंबे लगाए गए बाउंड्री खींची गई --

यहाँ पे ये सामने पार्क बनाया गया और बाउंड्री खींची गई और --

ये एक स्टेच है बड़ा सा और पीछे रेड कलर का पड़दा डाला गया है यहाँ पे --

पेड़ बी दिख रे है और यहाँ ख़राब बी है थोड़े बहोत यहाँ पे --

यहाँ पे बड़े बड़े कार्टून भी रखे हुए हैं नीचे बहुत सारी लाइटिंग्स भी है यहाँ प बहुत सारे --

बहोत सारा सेल्फ में बहोत सारे सामान रखे हैं यहां पे बैठने के लिए बहोत सारे सोफा सेट हैं तकिया टेबल्स है कैलेंडर्स है।

हरी भरी घास उगी हुई है छोटे छोटे पौधों को कट किया गया एक शेप में डिजाइन से और यहां पे फरारे लगाए गए ए_सी है बहोत सारे बच्चे हैं वॉचमिन --

यहां पे झूला बोर्ड लगाया गया है सामने टाइल बिछाए गए मैट बिछाए गए है ग्रीन कलर का यहां पे बच्चे भी हैं।

ये एक बड़े से यहां पे मेला लगा हुआ यहां पे--

बहोत सारे एक मीटर्स है यहां पे --

पेड़ लगे हुए यहां पर लेडिस जेंट्स सभी लोग यहां पर जा रहे हैं यहां पर ऑटो वाले हैं।

बाजू में ए_टी_एम है ऑटो ह कारा टू व्हीलर बोहोत सारे आजू बाजू दुकान रेड खंभे वैगैरह--